इसके साथ में कुर्सियां भी दिख रही है। ऊपर लाइट अच्छी सी लगाई है। लकड़ी से ऊपर का फर्श बनाया गया है।

दोनों ओर अलग अलग गाड़िया लगी हुई हैं।

पीछे की तरफ हमें खुला आसमान और थोड़े थोड़े पौधे भी हमें दिखाई दे रहे है।

राइट साइड हमें झंडा भी दिखाई दे रहा है और चारों तरफ से लोग इन्हें कह रहे हैं आसमान बहोत साफ भी दिख रहा है।

दूर हमें बोहोत से जंगले दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ हमें थोड़ी बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हम शायद किसी होटल के अंदर का दृश्य देख रहे हैं यहां पे बड़ी बड़ी ओल्ड स्टाइल वाली कुर्सियां हमें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में हम दो छोटे छोटे घरों को देख रहे हैं और उनकी बहोत सिर्फ एक सिंगल स्टोरी घर है और वो एक लेंटर पर शम लेंटर पे खड़े हुए हैं लेंटर बहोत सादे कलर का है।

इस फोटो में हम किसी बोर्ड को देख रहें हैं और अंदर जाते हुए एक रास्तों को देख रहें हैं और आसमान बहोत साफ हैं और उस रोड पर--